टीना का कलर ब्राउन कलर है।

मुझे इस तस्वीर में छोता दाबा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक कंप्यूटर और की बोड दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे लाइट्स भी हैं।

एक रेड कलर और व्हाइट कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

बॉक्स हिरन खाना खाने के लिए रखा हुआ है।

घर का बाहर एक कार भी दिखाई दे रहा है।

नदी भी दिखाई दे रहा है।

जिस हाल में बहोत सारे इंसाने अटेंन किया है।

ऊपर का सीलिंग व्हाइट है।

नीचे का वॉल वाइट कलर में है।

जिसमें बहोत सारे इंसान चलके हैं।

घर का पीछे बहोत सारा पेड़ भी निकल के हैं।

सुनहरे कलर का शर्ट पहना हुआ है और एक स्किनी जींस --

इसके बाहर बहुत सारे बाइक और करके रखा हुआ है।

उसके कॉर्नर में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

आसमान में इलेक्ट्रिक वायर भी है।

गेट का पिलर कलर इंडिया फ्लैग का कलर में लगाया हुआ है।

मुझे यहां एक दुकान दिखाई दे रहा है।

एक आधा कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।